आ जो इसके पीछे लिखा हुआ है टीचर भी इन लोगको देख--

यहाँ पे बच्चे बैठे हुए है और क- कलरिंग कर रहे है वो और वो स्कूल मे ही है।